का जाल बिछाया जा रहा है --

जाली लगी हुई है इसपे एक बोर्ड लगा है उसपे लिखा है शेरा।

और लोहे की जाली दिखाई दे रही जो की काले रंग --

यहाँ पे जो है एक छोटा-सा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसपे ईंटे की --

पौधे है उसके बाद है।

और यहाँ पे जो है पिलर भी है पिलर पे एक पोस्टर लगा है इसपे लिखा हुआ है मारुती सीमेंट .

बोहोत सारे लोग बैठे हैं इसमें महिला है पुरुष है।

इस चित्र में मंदिर दिखाई दे रहा है जो की शनि महाराज का मंदिर है।

जिन्होंने पीले कलर की शॉल ओढ़ी हुई है उनका जो है --

और हरे रंग का ये कारपेट डाला गया है बड़ा-सा झाड़ दिखाई दे रहा।

यहाँ पे जो है लोहे के --

अ यहाँ पे जो जमीन दिख रही है उसमें मिट्टी दिख रही है।

और आस-पास में बोहोत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे --

और मुर्गियों के लिए दाना भी डाला गया है।

सामने की तरफ से मार्केट दिख रहा है बहोत बड़ी-बड़ी ईमारत भी दिखाई दे रही है।

इसपे छोटे-छोटे अंकुर भी आ गए है।

ये चित्र किसी हॉल का दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है।

इस चित्र में काफी बड़ा मैदान दिख रहा है जहाँ पे बोहोत सारे बच्चे दिख रहे हैं।